यहां दो गाय नजर आ रहे हैं जिसका रंग काला है और वो हरे हरे झरिया खा रहे हैं।

दूर एक नीला कलर का घर दिखाई दे रहा है।

सामने एक बहोत बड़ा सा गाड़ी नजर आ रहा है।

एक लंबा सा घर नजर आ रहा है।

और पीछे बहुत बड़ा एक पेड़ नजर आ रहे --

वही साइड में एक लाल कलर की गाड़ी और सफेद कलर की गाड़ी नजर आ रहा है।

एक दुकान दिखाई दे रहा है।

और सूरज डूबता हुआ नजर आ रहा है।